यह एक मैदान का दृश्य है।

हरे-भरे दिख रहे हैं ।

स्त्री और पुरुष रोग के जो विशेषज्ञ है।

यहाँ बगल में के.के मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर है ।

यह एक बगीचे का दृश्य है जिसमे कई व्यक्ति कई स्त्री-पुरुष --

जो नदी को दृश्य देख दर्शन मतलब दर्शन देख कर सके --

रूम को बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया है ।

अ घर में कई प्रकार की सजावट की सामग्री इस्तेमाल की गई हैं ।

वृछ काफी बड़े और मोटे पैमाने पर हैं।

यह एक दूकान है जिसका नाम राज इंटरप्राइजेज --